सामने हमें यहाँ पर रोड बना हुआ दिख रहा है | रोड के पास हमें एक ग्राउंड बना हुआ दिख रहा है | उसके बाद हमें यहाँ पर बाइक दिख रही है और बाइक के बाद हमें एक शोरूम नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें कुछ मंदिर बने हुए नजर आ रहे। एक बड़ा मंदिर बना हुआ है। एक तो पांच छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। वहाँ पर हमें बांसों से बनी बाउंड्री दिख रही है और यहाँ पर एक घास का मैदान है। इसमें कई तरह के पेड़ लगे हैं। कुछ हल्के हरे रंग के हैं।

और हमें रोड दिख रहा है | रोड पर कुछ सफेद रंग का कचरा पड़ा है हुआ है सामने हमें एक शॉप दिख रही है जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की शॉप की है | वहाँ पर लाल रंग के बोर्ड लगे हुए हैं | कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान जो रूम के अंदर है ।

जिसपे लाल रंग का बोर्ड लगा है और ये बोर्ड पर सफेद रंग से इसका नाम लिखा है और ये एक चप्पलों का शोरूम लग रहा है। उसके पुछे एक बिल्डिंग बनी हुई है।

इसके अंदर हमे एक स्त्री और पुरुष जाते हुए दिख रहे है और एक कार हमे दिख रही है उसके पिछे बाउंड्री वॉल बनी हुई दिख रही है वहाँ पर पुरे में हमें आसमान दिख रहा है आसमान में बादल बने हुए हैं और एक सफेद रंग की बिल्डिंग है जिसमे काली खिड़की और और दरवाजे दिख रहे हैऔर बाउंड्री वॉल पर पेड़ लग --

मंदिर के अंदर हमें मूर्ति बनी हुई दिख रही है और यहां मंदिर के अंदर पेड़ लगे हुए दिख रहे है और साइड मे भी पेड़ लगे हुए हैं आसमान हमे नज़र आ रहा है और एक सीमेंट का खंभा बना हुआ हैं।

ये चित्र एक रोड का है इस रोड पर एक साइकिल पर दो व्यक्ति जा रहे हैं उन्होंने सर पर कपड़ा बाँधा हुआ है और रोड पर रेत रखी हुई है और ईंटे हैं और यहाँ पर एक रिक्शा खड़ा हुआ है ।

और यहाँ पर एक मोबाईल कंपनी का शॉप दिख रहा है उसका लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर एक और नीले रंग का बोर्ड लगा है और एक और दुकान यहा खुली हुई दिख रही है।

और वहाँ पर एक मुख्य द्वार बना हुआ है जिस में नीले रंग का बोर्ड लगा है वहाँ अंदर प्रांगण में भी पेड़ पोधे लगे हुए है ऊपर आसमान हमें दिख रहा है।

इस चित्र में हमें एक मैदान दिख रहा है एक कच्चा रस्ता दिख रहा है उस पर घास लगी हुई है और आगे हमें कुछ आकृतियां बनी हुई दिख रही है कुछ एक पहाड़ी जैसे दिख रही है जहां पर सीढ़िया बनी हुई है।

कुछ व्यक्ति हमें दिख रहे है और कुछ पेड़ पौधे लगे हुए है बड़े-बड़े पेड़ पौधे लगे हुए है और नीचे जमीन पर घास लगी हुई है और ऊपर हमें आसमान नजर आ रहा है और यहां पर सूरज की रोशनी दिख रही है।

और वहाँ पर लोहे का एक गोट- गेट है जो कि हल्के नीले रंग से रंगा हुआ है। उसके ऊपर एक सफेद रंग का बोर्ड लगा है और उस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है। वहाँ पर गेट के अंदर की तरफ पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर हमें आसमान दिख रहा --